उसमें पतली पतली टहनियों वाले कुछ पेड़ हैं।

ये एक मस्जिद है जिसमें एक तुंबद दिख रहा है।

और इसके बाहर दो लाइटे भी जल रही है।

और दूसरा वॉक कर रहा है वॉक मशीन पे और इसमें व्हाइट कलर की काफी सारी लाइट्स भी लगी हुई है।

रोड है जिसके दोनों तरफ काफी सारी स्टॉल्स लगी हुई है।

कपड़ो की दुकान है जहाँ वेराइटी है काफी सारे कपड़ो की सामने रेड डिब्बे में कुछ रेड कलर की टी-शर्ट है।

ये एक पुल है जिसके ऊपर टू वे रोड है।

ऑटो के साथ में एक बिजली का खम्भा है जो बीच में से फुटपाथ जा रहा है वो टुटा हुआ है।

लेफ्ट साइड पे एक चेयर रखी है उसके साथ मे डस्टबिन है।

खुला मैदान है जहां पे जो है ऐरोप्लेन जो है लैंड कर रहा है।

एक आदमी है जिसने सर पर पग़डी बांध रखी है गले मे माला पहेन के व ट्रैक्टर मे सवार होके--